काफी स-साफ़ सुथरा नदी लग रही है एक लड़का बैठा हुआ है जो चश्मा पहने हुए है और टोपी लगाए हुए है।